यहाँ पर एक कैमरास्टैंड लगा हुआ है उसपे कैमरा लगा हुआ है एक आदमी है जो खड़ा हुआ है। और पीछे हाथ को पीछे--

मी बैठे हुए दिख रहे है जो कुछ लोग हात जोड़े हुए भी दिख रहे बड़ा सा दरवाजा जैसा बना हुआ है।

यहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ दिख रहा है उसके पीछे बहुत सारे रेड कलर के बलून लगे हुए जो अच्छे लग रहे है।

ऊपर में भी लगे हुए है नीचे में भी कुछ गिरे हुए नीचे में व्हाइट कलर का टाइल्स लगा हुआ है और एक ए.सी भी लगा हुआ दिख रहा है।